राइट साइड लेफ्ट साइड बहोत बड़े-बड़े घास है ब्रिज एंड रोड बने हुए है टी पॉइंट बना हुआ है एक राइट साइड में रोड का --

सामने एक बहुत बड़ा नौका है नदी है जिसमे नौका में बहुत सारा आदमी नज़र आ रहे है एक आदमी सामने ठेले में कुछ बेच रहा है।

बच्चा हाफ एंड ब्लैक का शर्ट पहना हुआ है बहुत से लोहा का बनाया हुआ है जिसमे चढ़ा हुआ है एक ऊपर की और चढ़ा हुआ है और एक सामने की ओर चढ़ा हुआ है बच्चा है।

आगे की ओर एक बाइक है बहुत सारी खिड़कियां है जिसमे ल सीसा की खिड़कियां है ऊपर की ओर जो छज्जा है।

एक ये न्यू फैशन जीन्स का दुकान है जिसमें ऊपर की बोर्ड में लिखा हुआ है न्यू फैशन जीन्स --

निचे बहुत सिक्लिस रखे हुए है बाइक रखा हुआ है आगे और बाइक नज़र आ रहा है आदमी--

आगे की ओर एक दुकान है जिसमे बहोत सारा सामान रखे हुए हैं लेफ्ट साइड में दो कचरा का डब्बा रखा हुआ है।

एक आदमी है जो मुँह में मास्क लगा सामने की ओर एक आदमी बैठा दुकान में खैर ऊपर में बार लिखा हुआ है स्नेक बार लिख --

ये एक बिरयानी का प्लेट है जैसा वाइट प्लेट में बिरयानी रखा हुआ है एंड राइट साइड मे चिकेन है एंड एक छोटा सा गमला में भी बिरयानी रखा हुआ है एक जग रखा हुआ है।

एक चटनी का बॉल है रायता है एंड आगे ओर एक बिरयानी का बॉल है एंड गिलास है एक काला रंग का एक टेबल है।

एण्ड बहुत सारे फूलो से डेकोरेशन किया गया है और वाइट कलर के छोटे-छोटे पंडाल बने हुए है अंदर की ओर एंड बहुत सारे सोफे लगा हुए है बैठने के लिए वाइट कलर का सोफा है।